पीछे इसमे एक बकेट नजर आ रही है जो नीले और हरे रंग की है।

ऊपर आसमान नजर आ रहा है साइड में एक खम्बा दिख रहा है जो स्ट्रीट लाइट है।

यह तस्वीर एक खेत की है| इसमें एक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है जो एक पेड़ पे मिट्टी डाल रहा है| पीछे इसमें काफी घने पेड़ लगे हुए हैं| इसमें कुछ छोटे पेड़ भी है| यह पूरा ग्राउन्ड है ऊपर आसमान नजर आ रहा है।

एक पीछे व्यक्ति खड़ा हुआ है एक व्यक्ति काट रहा है बालों को।